और यहां बहुत सारे इलेक्ट्रिक मशीन भी है।

और बड़े-बड़े पैर हैं।

इसके जस्ट साइड मे वंदना बैंक ए_टी_एम भी लिखा हुआ है।

अंदर बहुत ही अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था दिखाई दे रही है।

यह एक रूम का फोटो है।

सामने एक वाइट कलर का टेबल भी है।

मेरे सामने एक हार्डवेयर का बहुत ही सुंदर दुकान दिखाई दे रहा है।

जिसके बाहर कुछ बेनर लगे हुए है ।

रोड के जस्ट आगे एक बहुत ही बड़ी तलाब है।

रोड के साइड में रेलिंग बना हुआ है जिसके जस्ट बाद खजूर का पेड़ है।

एक आम का पेड़ है।

यह एक हॉस्पिटल स्टोर का फोटो है।

यह एक स्टोर का फोटो है।